इसमें पानी भरा हुआ है।

साइड वाली दुकान पे बर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है नीचे टाटा स्काई का बोर्ड लगा हुआ है डिश टी_वी की छतरी चिपकी हुई है।

सामने टेंट लगा हुआ है जिसके उपर दो गुलाब के फुल बने हुए है।

और सामने पेड़ भी लगे हुए हैं एक बिल्डिंग है जिसे बहुत सारे जंग लगे हुए हैं।

गोल गोल मसीन लगी हुई है।

काले कलर के टायर रखे हुए हैं जिनमें बीच बीच में स्टीकर छपा हुआ है जिसपे सफेद कलर लाल कलर नीले कलर है।

रेलिंग लगी हुई है पीले कलर की।

गाड़ी का बोनट खुला हुआ है।

पीछे बहोत विशाल मिट्टी के पहाड़ बने हुए है।

पीछे घास की है पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस--

बेल पत्रों की पत पत्ताओं की और उसपे एक फूलों की माला है।